जहां काफी ज्यादा गोल्ड है एंड दो आदमी बैठे हैं।

दुकान में काफी ज्यादा लाइटें हैं।

यहाँ पर मुझे शूज की एक शॉप दिख रही है।

एंड अलग-अलग कलर के हैं।

दुकान में काफी सामान है।

यहां पर एक जूते की दुकान है।

यहाँ पर मुझे कुछ पहाड़ियां दिख रही हैजो--

जो बिल्कुल जंगल के बीच में है।

और कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही है।

जो एक कमरा है जहां दीवारों पर काफी पेंटिंग्स लगी है।

सुंदर है जहां एक आदमी खड़ा है।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

यहाँ पर मुझे एक होटल दिख रहा है।

बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है।

स्टैंड दिखाया गया है यहां कुछ बसें लगी हैं।

काफी बड़ी-बड़ी बसें लगी है।

मंदिर सा दिख रहा है जहां बाहर कुछ--

जहां कुछ स्कूल या कोई ऑफिस टाइप है एंड रोड भी है या एक आदमी चल रहा --

यहाँ पर एक जगह दिखाई गई है।

जिम दिखाया गया है जहां काफी ज्यादा मैटेरियल है एंड काफी चेयरज़ लगी हैं।

जो घर से भी है और रस्ते पर लोग चल रहे है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

गाड़ियां रोड में खड़ी है एंड कुछ स्टेयर्स लगे हैं काफी पेड़ है कुछ तारे भी लगे हैं।

एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है।

पेट्रोल पंप काफी बड़ा है और बिल्कुल चिड़िया है।

यहाँ पर मुझे एक फ्लैट दिख रहा हैजो --